हैलो गाइज जैसा की आप यहां पे देख सकते है यहां पे जो है आपको एक बहुत बड़ी सी इमारत बनी हुई दिखाई दे रही होगी और सामने आप देखेंगे आपको एक आदमी दिखाई देगा जिसने यैलो कलर की टीशर्ट पहनी है ब्लू जींस पहनी है ।

हेलो गाइज जैसा की आप यहाँ पे देख सकते है यहाँ पे जो है आपको अ पटाखे दिखाई दे रहे है और यहाँ पे देख सकते है दिवाली मनाई जा रही है आगे गाड़ी रखी हुई है यहाँ पे जो है --

गाइज जैसा कि आप यहां पे देख सकते है यहां पे जो है आपको जो है बहुत सारी लड़कियां दिखाई दे रही है जो कि जो सबने जो है डांस की प्रैक्टिस कर रहे है और --

हेल्लो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे लोग दिखाई है सभी ने जो वाइट कपड़े पहने हुए और सब जगह कैंडल्स जला रहे हैं दिए जला रहे हैं बीच में आप देखेंगे --

गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो सामने की ओर देख रहा है उसने रेड टी-शर्ट और ब्लू टोपी लगाई हुई है ओर उसने पीछे आप देख सकते है बहुत सारे आपको पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं बड़े-बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

लोग खड़े भी हुए है बहोत सारे बैग्स रखे हुए है आपको दिखाई दे रहे है यहा पे शॉप बनी हुई दिखाई दे रही है।